कार दिखाई दे रही है जिसका कलर व्हाइट दिखाई दे रहा है और बोहोत से पेड़ दिखाई दे रहे हैं बोहोत सारे पलाइनिंग दिखाई दे रही है।

आग दिखाई दे रही है और यहाँ पे एक बो-व्यक्ति दिखाई दे रहा है बहोत सारा पत्थर्स दिखाई दे रहे हैं।

पर्पल कलर का गेट दिखाई दे रहा है और यह पर ग्रीन कलर दिखाई दे रहा है ग्रे कलर दिखाई दे रहा है।

लोग दिखाई दे रहे हैं यहाँ बहोत से कपबोर्ड्स दिखाई दे रहे हैं फैन दिखाई दे रहा है है और यहाँ पे ब्राउन कलर दिखाई दे रहा है यहाँ पे कपबोर्ड्स दिखाई दे रही है नि --